''यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सैलून है। यहाँ पर लोग मेंस सैलून है जो यहाँ पे --''

लाल फूल येलो फूल बीच में नारियल जोकि ब्लू कलर से कवर कर दिया गया है। नीचे बोहोत सारे गेंदा का फूल हैं। बोहोत अच्छा है। दुकान है फूल की। यहाँ पे दो लोग हैं। बोहोत भीड़ लगी हुई है लेकिन ओ --

पेड़-पौधे हैं। सुंदर सुंदर फ्लावर्स टूट के गिरे हैं। यहाँ पे लोग शाम को आते होंगे घूमने।

एम उम यहाँ पे एक कस्टमर और एक सेलर भी है जोकि खरीद रहे हैं ई रिक्शा उससे बहुत फायेदा होता है ये --